पंडाल बहोत भयानक लग रहा है और दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पूजा कर रहे हैं ध्यान लगाए हुए है।

देखिए ये नजारा बहोत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जिसमे एक तीन चार पांच भैंस दिख रहा चर रहे हैंसाथ में चर रहे हैं और मारा हुआ है।

इसमें देखिये ऊपर में पीला और हरा --